यहां पे एक बहोत ही बड़ा कॉलेज दिख रहा है इधर साइड भी है और इधर साइड भी है दोनों साइड कॉलेज बना हुआ है।

इसका नंबर है बी_आर जीरो सिक्स पी_एफ --

यहां पे एक रोड गया हुआ है और बगल में ईंट सब रखा गया है और इट के ऊपर--

इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि बाइक सर्विस और स्कूटी सर्विस हो रहा है एक आदमी एक स्कूटी को सर्विस कर रहा है।

ट्रे में से उठा के ये बंदा दे रहा है ये बंदा रेड कलर का शर्ट और व्हाइट कलर का पहना हुआ है।

इस फोटो में एक कपड़ा का दुकान है जहां पे बहोत सारा कपड़ा रखा हुआ है साड़ी सूट और भी बहुत सारा--

और भी बहोत सारे फ्रिज अंदर रखे गए हैं और यहां पर डिश टी_वी रिचार्ज हेयर का एक पोस्टर लगा हुआ है और दो भी लगा हुआ है उसके--

इस फोटो में एक दुकान का अ दुकान दिखाया जा रहा है जहाँ पर डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है इस बर्थडे में ये चीज सब लगता है।

इस फोटो में दो बंदा बैठा हुआ है एक बंदा मोबाइल लिए हाथ में देख रहा है और दूसरा भी देख रहा है उसके फोन में--

और यहां पे दो डंडा टाइप का कुछ गाड़ा हुआ है स्टील है और एक आदमी येलो टी शर्ट पहन के और ब्लैक पैंट पहन के जा रहा है।

और बगल में दो बंदा खड़ा होक सुन रहा है पीछे दो पोस्टर लगी हुई है।